द्वार को सजाया गया है यहां हरे कलर का लोहे का --

यह इमारते कॉलेज है इस कॉलेज का नाम गोवा कॉलेज ऑफ़ इंजीनिर --

पुल बना हुआ है जो कि सीमेंट के स्तंभ पर है यहां पर लोहे का --

यह एक बारात घर का दृस्य है यहाँ पे एक लोग खाना --

खा रहे है यहा पे एक व्यक्ति नीले रंग के कुर्ता पैजामा में --

यहा पे टी-शर्ट टॉप पेंट जीन --

में एक व्यक्ति खड़ा है।

यह एक तबेला है जिस पे बहुत सारी गाय खड़ी है।

इमारत बनी हुई है यह बहुत ही सुंदर और भव्य लग रहा है ।

चाय से लेकर खाने पीने के सामान मिलते हैं ।

छोटा सा मकान बना हुआ है उसके बाहर काफी सारी --

जैसा की मैं देख पा रही हू यह एक बेकरी है यहा पे कोल्डड्रिंक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ।

बैटरी रिक्शा लगा हुआ हैयह --

यहां पर एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा --

आये हुए है यहाँ पे तीन ऐ.सी लगे हुए है।

यहां लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पे एक बहुत ही बड़ी --

जहाज में से पाइप के द्वारा ऊपरी तरफ धुआ फेंक रहा है ।

अलमारी में काफी सारे पुस्तक लगे हुए हैं ।

यहां किसी चीज का एक कैंप लगा हुआ ।

यहाँ पे गाड़िया उचित दामों में विक्रेता --

जंगल के बीच ऐसा लग रहा है बालों के? --

मैदान के चारों किनारे पर एक-एक झंडा लगा हुआ है तथा बीच में से --

स्लैप पर रखे हुए है यह एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह एक गेरेज है यहा पे काफी सारि --

जो कुछ बनाने के लिए गाड़ियां रखी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक बहुत ही बड़ा --

रहा है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं।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

ग्रह के बीच बहुत ही बड़ा --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक बहुत ही बड़ा कमरा है।

यह एक बस अड्डा है।